इस दुकान पर मुझे बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं पीले कलर के लाल कलर के और यहाँ पर एक भैया भी खड़े हैं जो मुझें दिखाई दे रहे हैं।

चार लोग कार सुधार रहे है एक इंसान खड़े होके देख रहा है।

यह फोटो एअरपोर्ट की है ये अंकल जी पोज़ दे रहे है यहाँ पे यहाँ एक लड़की फोटो खिचवा रही है और इसके पीछे जो एयरोप्लेन खड़ा है ये इंडिगो कंपनी की है।

यहां गणेश जी फोटो दिखाई दे रही है साम-सामने स्टेज है फ्लावर्स से सजाया हुआ है कुर्सी--

मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो एक कुछ काम कर रहा है यह फ़र्श का काम कर रहा है।

कुछ डिजाइन दे रहा है यहां मशीन रखा है यहां हतोडी रखी है यहां पे यहां पे कुछ काम चल रहा है।

फोटू में मुझे बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं यहाँ सब मे फूलो की दूकान लगी हुई है और यहाँ पर मुझे बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है।